इस पिक्चर में क्लास चल रही है जहां पर कुछ स्टूडेंट बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं एक--

लकड़ी की टेबल बनी हुई है जिसके ऊपर काफी सारा सामान रखा हुआ है।

दिख रहा है कुछ पेड़ पौधे बड़े और कुछ छोटे नज़र आ रहे है।

कुछ छोटे छोटे गमले लगे हुए हैं जिनके अंदर छोटे पेड़ पौधे लगे हैं।

कुछ फेविकोल के बॉक्सेस और कुछ अलग तरह के समान--

ये एक पार्क है जो की काफी सुंदर नजर आ रहा है पार्क में काफी सारे--

ये एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है जहां पर तीन बसे खड़ी हुई है।

दो दुकाने है जो की बंद नजर आ रही है बाहर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

किनारे पर काफी सारी दुकाने हैं सामने की तरफ एक बहोत बड़ी लाल कलर की--

कुछ व्यक्ति चलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ व्यक्ति दुकान से सामान खरीद रहे हैं।

और यह एक झुग्गी जैसी बनी हुई है नीचे की तरफ कुछ पत्थर भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं छोटी छोटी सीढ़ियां भी बनी हुई हैं।

रखा हुआ दिखाई दे रहा है केक काफी सुंदर नजर आ रहा है।